इसमें बेंचे पड़ी हुई हैं और लड़के --

इसमें अनेक कमरे हैं और दूसरे मंजिल पर भी अनेक कमरे हैं।

इसमें अनेक कमरे हैं और --

यह एक नदी का चित्र है।

बगल में खड़े हुए हैं।